दिखाई पड़ रही है ऊपर भी बन रहा है।

इसमें जो गमले रखे हुए हैं कांटेदार फूल और लगे हुए हैं।

सफेद कलर के पर्दे पड़े हुए हैं और बैलून भी लगे हुए हैं।

बाउंड्री के पीछे बहुत सारे पेड़ भी दिखाई पड़ रहे हैं और इस तरफ एक चबूतरा जैसा पथा हुआ है।

यह एक गेस्ट हाउस जैसा दिखाई पड़ रहा है इसमें सजावट बहोत अच्छी की गई है।

बहुत सारे लोग कुछ सीढ़ियों पे कुछ सीढ़ियों के ऊपर कुछ सीढ़ियों के नीचे खड़े हुए हैं।

दो लोग को सामान हाथ में पकड़े हुए भी हैं उधर एक माल गाड़ी भी जा रही है।

एक मकान भी बना दिखाई पड़ रहा है और ऊपर टीन पड़ी हुई है।